यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम के बाहर बहोत बड़ा दरवाजा दिखाई दे--

आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल दिख रहे हैं। बहुत सारी बिजली की तारे दिख रही है।

स्कूल में बोर्ड लगा है जे_एम_के इंटरनेशनल स्कूल और यहां बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

आदमी ने सर पे कैप पेहेन रखी है दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे लकड़ी के केबिनेट्स बने हुए हैं।

और सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और यहां एक गेट दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

चेयर दिखाई दे रही है चेयर के ऊपर पिलो दिखाई दे रहा है।

वॉलपेपर लगा हुआ है और पंखे दिखाई दे रहे हैं।

ट्रॅक शर्ट्स टंगी हुई है जींस टंगी हुई--

फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर टाइल्स लगी हुई हैं।

यह एक इलेक्ट्रिशियन शॉप दिखाई दे रही है।

इसके उप बाहर बोर्ड लगा हुआ है।

छत दिखाई दे रही है छत पे टीन लगी हुई है।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ के नीचे सफेद रंग हुआ है।

ये एक चाय वाली शॉप दिखाई दे रही है यहां पर ए--

और यहां पर आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।